adding functionalities using modules पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम modules से परिचित होंगे हम book module और forum module के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
modules और themes drupal website में फीचर को विस्तार करने या जोडने के प्राथमिक तरीके हैं
drupal एक पूर्ण content management system प्रदान करता है लेकिन कभी कभी हमें अधिक की जरूरत होती है और यहीं modules काम आते हैं
modules हमारी drupal website में फीचर्स जोड़ते हैं drupal में यहाँ तीन प्रकार के modules हैं
यहाँ core modules हैं ये वे modules हैं जो default रूप से drupal में आते हैं
उन्हें of किया जा सकता है लेकिनftp का उपयोग करके website के core area में कभी न जायें और इन modules को हटायें
उन्हें फिर से reinstalled किया जायेगा जब भी हम drupal को अपडेट करेंगे
ये core modules drupal के बुनियादी कार्यक्षमता के लिए बने हैं
फिर यहाँ contributed modules हैं हमने पहले से ही एक installed किया है हमने पहले ही devel installed किया है
contributed module वह module है जो समुदाय में किसी के लिए योगदान देता है और यह drupal org पर उपलब्ध है
अंतिम प्रकार का module custom module है
यह है जहाँ हमारे पास कुछ विशिष्ट कार्यक्षमता है जिनकी हमें अपने project में जरूरत है यह module उपलब्ध नहीं है और कोई भी इस जगह इसके बारे में नहीं सोचता है
लेकिन जाहिर है कि हम इसे अपने लिए बना रहे हैं या हमारे लिए यह बनाने के लिए हम किसी और को भुगतान करते हैं
यहाँ drupal के लिए कई भिन्न modules उपलब्ध हैं
यहाँ drupal org पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही 32458 modules हैं
modules कई कार्य करते हैं
एक module content type में field जोड सकता है अन्य module हमारे पूर्ण website के लिए पूरा voting system जोड सकता है
लेकिन हम केवल एक module का उपयोग कर सकते हैं जो कि drupal के version के साथ अनुकूल है
और इसलिए हमें यहाँ drupal org/project/modules पर अपने modules को filter करने की जरूरत होगी
जब हम उन्हें filter करते हैं वे हमेशा popularity क्रम में सूचीबद्ध हैं
पहले तीन या चार पेजों में सबसे लोकप्रिय modules हैं जिसका अर्थ है कि वे बहुत ही उपयोगी है और अक्सर वे बहुत ही मददगार रहे हैं
संक्षेप में modules फीचर्स जोडता है और यहाँ drupal org पर कई modules हैं जो कि मुफ्त में उपलब्ध हैं
अपनी website खोलें जिसे हमने पहले बनाया है extend पर click करें और फिर नीचे scroll करें
यहाँ हमारे पास कुछ modules हैं जो कि default रूप से drupal में आते हैं लेकिन वे पहले से ही on नहीं हैं
book module को enable करें
नीचे थोडा सा scroll करें और हमें forum module मिलेगा उसे एक बार on करें
हम एक ही समय में दो अलगअलग modules on कर सकते हैं
नीचे scroll करें और install पर click करें
book module और forum module दो बहुत ही अलग अलग प्रकार के modules हैं
लेकिन वे दोनों एकदम नए content types बनाते हैं और वे इसका विस्तार करके drupal में अतिरिक्त functionality लाते हैं
drupal modules बहुत अलग चीजें करते हैं भले ही वे सभी modules हैं
जब आप आपनी site के लिए नए फीचर्स जोडना चाहते हैं जहाँ यह पूरी तरह से नया functionality है या अभी भी नया field type
आप drupal core का विस्तार करने के लिए module जोड रहे हैं
अब structure और content types पर click करें हम देख सकते हैं कि यहाँ दो नयें content types हैं book page और forum topic
content पर क्लिक करके book page content type को check करें और फिर add content पर क्लिक करें
book page हमारी site पर chapters navigations और blog के साथ book बनाता है उसे हम अपने अनुसार कहीं भी the जा सकते हैं
book page पर click करें अब title में our drupal manual type करें
body में type करें this is the beginning of our drupal manual
हमारी publication settings पर हमारे पास नया setting है
book outline पर click करें और none को create a new book में बदलें फिर save and publish पर click करें
यहाँ add child page named link पर ध्यान दें drupal org में documentation पर click करें
अब जब हम understanding drupal पर click करते हैं तो हम book module देख सकते हैं
यहाँ दाईं ओर navigation है यहाँ पेज के अंत पर कुछ और navigation है जो स्वत: ही उत्पन्न हुए हैं
बाईं ओर links है
drupal concept पर click करें देखें कि यहाँ हमारे पास navigation हैं
और दाई ओर हमारा navigation हमें दर्शा रहा है कि आगे क्या आ रहा है
हम book module का उपयोग करके अपने अनुसार complete और complex यूजर guides या किसी भी प्रकार की books बना सकते हैं
अपनी website पर वापस जाएँ और add child page पर click करें
title में installing drupal type करें और body में this is where we explain how to install drupal type करें
ध्यान दें कि यह स्वत: ही drupal manual में आ गया है जिसे हम बना रहे हैं यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने create book page पर क्लिक किया था
save and publish पर click करें
हम देख सकते हैं कि navigation हमारे लिए स्वत: ही उत्पन्न हो गया है
up पर click करें यह main main level पर ले जाता है याद करेंमैंने पहले उल्लेख किया था कि वहाँ इसके साथ block उपलब्ध है
structure और block layout पर click करें
और sidebar first में block पर जायें place block पर क्लिक करें और हम देख सकते हैं कि हमारे पास book navigation menu है
place block पर click करें फिर save block पर click करें
save blocks पर click करें और अपनी site पर जाएँ यहाँ हमारा book navigation our drupal manual और installing drupal है
यह समाप्ति और जरूरत के हिसाब से विकसित होगा जब हम नए child pages जोडते हैं
फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ drupal org पर जाएँ user manual या documentation के माध्यम से browse करें जो ऐसा करने के लिए book module का उपयोग करता है
यह बहुत ही प्रभावशाली है यदि यह उस तरह का कंटेंट है जो आप अपनी site पर चाहते हैं आप title औऱ body तक सीमित नहीं है
content type में fields जोड सकते हैं जो कि book module में आते हैं
यदि website में वास्तव में forum होने से लाभ है तो फिर forum module वास्तव में मददगार है
content पर click करें और फिर add content पर click करें
forum module वास्तव में forum topic नामक new content type बनाता है
यें field able हैं जिसका मतलब है कि हम सिर्फ title और body तक ही सीमित नहीं है
forum topic पर click करें learning drupal नामक forum topic प्रविष्ट करें forums में इसे general discussion में रखें
फिर body में hi im just learning drupal can someone help me प्रविष्ट करें
save and publish पर click करें
अब क्योंकि यह forum content type में है comments में एक प्रतिक्रिया जोड़ें
add comment जोडते हैंsure i can help you should just read everything at drupalville! और फिर save पर click करें
चूंकि हम super user के रूप में लॉगिन है इन्हें स्वत: ही मंजूरी दे दी है
यदि हम general discussion पर click करते हैं तो हमारे पास एक general discussion है
forum topic 1 comment के साथ learning drupal दर्शाता है
add यदि हम comment पर click करते हैं तो हम comments जोडना जारी रख सकते हैं इस तरीके से हम सभी प्रकार के forums now सकते हैं
forums पर click करें
आप यहाँ नया forum topic जोडने के लिए click कर सकते हैं जो कि general discussion में होगा लेकिन administrator के रूप में आपको इस से अलग अधिक forums जोडने चाहिए
अत: इसे करते हैं structure पर click करें और फिर forums पर click करें यहाँ हम नया forums औऱ नया containers जोड सकते हैं
यदि मैं forum जोडना चाहती हूँ तो मैं यह कर सकती हूँ और मैं उन्हें पुन: व्यवस्थित कर सकती हूँ जहाँ चाहती हूँ
content पर वापस आयें और फिर add content और forum topic पर add मेरे पास इन्हें अन्य forums में रखने का विकल्प है
इस तरह से हम अपने drupal website पर forum को व्यवस्थित कर सकते हैं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
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद